अ लाइट ग्रीन या सियान कह सकते हो उस कलर के पर्दे के बाहर--

नीचे ग्रीन कलर की फ्लोरिंग है ऊपर एक डिजाइनर के साथ एक पिलर है और पीछे आई थिंक कृष्णा भगवान की एक स्टेच्यू है।

और मेरे को ऊपर ऐसा लग रहा है किसी का पैर दिख रहा है ब्लू कलर का और ऐसे पीछे भी काफी सारी ग्रीनरी वगैरह है।